इस इमेज में हम एक दुकान देख सकते हैं जिसका नाम है श्री कृष्णा दूध डेरी --

जो इन मिर्चो में से अच्छी अच्छी छांट रहा है औऱ बेकार वाली फैंक देगा।

इस इमेज में हम एक झूले को देख सकते हैं जो कि एक पार्क में लगा हुआ है।

इसके अंदर बहुत लोग उनकी पूजा कर रहे हैं बहुत सारी औरतें भी हैं।

और उनके आगे दो बच्चे हैं जिन्होंने मोम की बत्ती जलाई हुई है उनके सा आगे।

यहां पर छोटी सी टेबल फैन स्टैंडिंग फैन गीजर वाटर कूलर ये सब चीजें रखी हुई है।

इसके लेफ्ट वाले में बहोत सारे टायर जमीन पर रखे हुए हैं।

ये एक रूम में रखी हुई है जो रूम पूरा व्हाइट कलर का है और इसमें बहोत सारी लाइट्स जल रही है।

की दूर वाहन नम नेम प्लेट पर कैशियर लिखा हुआ है।